और इसका एक लोहे का गेट भी है।

और सामने दो गैस भी टंगे हुए हैं।

और उसके ऊपर एक बोर्ड भी लगा हुआ है।

यह एक फर्नीचर की दुकान है।

और एक ए_सी भी लगी हुई है।

और कुछ आदमी बैठे हुए हैं।

साइड में एक डस्टबिन भी रखा हुआ है।

औ कुछ खिड़कियां भी लगी हुई हैं।